ये बड़ी सी मुलतिये दिखाई दे रही है लम्बी लाइन से मुलतिये है ये मल्टियों का गेट दिख रहा है पहाड़ से जाली-वाले --

इसमें ये आदर्श अ मम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर लिखा हुआ है।

शेड लगा हुआ है ऊपर टिन शेड से बना हुआ है ये उस लड़के के पीछे कुछ डब्बे जमे हुए दिखाई दे रहे हैं।

डील एक्स ग्लूसिव स्टोर लिखा हुआ है अन्दर सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है बड़ा-बड़ा सामान रखा है अन्दर ।

ये रोड के सामने पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है प्लाट में पानी भरा हुआ है प्लाट में पानी के अन्दर प्लर बने हुए दिख रहे है ये।

ये सामने द सिटी क्लब लिखा हुआ है नीचे क्लब है ये क्लब के बाहर एक लड़का --

एक नाव के शेप में बाउल रखा हुआ है बड़ा उसमें ये आइसक्रीम रखी हुई है।

जाली के उधर पिंजरे में दो पैरेट दिखाई दे रहे हैं। दो पैरेट हैं ब्लू कलर के और येलो कलर के पैरेट हैं ये ।

ये नदी दिख रही है बड़ी सी ये नदी मैं दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है फोटो लेते हुए पास मैं एक नाव रखी हुई है ।

हेवन लिखा हुआ है और ये बैलून से सजी हुई है बैलून से डेकोरेट ये दूकान दिख रही है सीढियाँ दिख रही है।

और ये ब्रिज दिख रहा है बड़ा सा ब्रिज के नीचे दुकाने गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। दुकाने लग रही है छोटी--

ये बड़ा सा सुंदर सा घर दिखाई दे रहा। सुंदर सा घर बना हुआ है ये।

अंदर पेड़ दिखाई दे रहा है। अंदर बड़े-बड़े पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं रोड के अंदर ।

ये रोड के सामने बड़ी सी मस्जिद दिख रही है। मस्जिद बनी हुई है बड़ी सी। ये बिल्डिंग --